यह एक किसी बिजिनेस करने की जगह की आ बड़ा कॉम्प्लेक्स है इसका रंग सफ़ेद है और यह किसी आ ब्रिज के आस पास में हैं।